यहाँ पर मुस्लिमों धर्म के लोग नमाज़ पढ़ते है यहाँ पर चार हॉर्न लगे हुए है।

और उसके बगल मे भी कई सारे भगवान जी का मूर्ति है।

देखने में तोह कोई छोटा पार्क का सीन लग रहा है जिसमे कई सारे बच्चे उम_म झूले पे बैठे हुए हैं और तीन-चार लड़के उधर हैं।

ये देखने मे तो कोई सादी का--